पहना हुआ है और औरत ने भी अपने मुँह पर मास्क पहना हुआ है यहाँ पर औरत आदमी को इंजेक्शन लगते हुए दिखाई पड़ रही हैं।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

रखी हुई है और बहोत सारे खिलवनो के डब्बे दिख रहे हैं। सामने की तरफ कुछ बैट रखे हुए हैं और नीचे भी कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यह एक एच.डी.एफ.सी. बैंक का दृश्य है। यहाँ पर देखिये सामने की तरफ शीशे के दरवाजे लगे वे हैं और किनारे पर ए --

ये दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ एक कक्षा है जिसमें की छात्रों के बैठने के लिए है यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई है सामने की तरफ दो दरवाजे दिखाई दे रहे है और एक खिड़की लगी हुई दिख रही है। यहाँ पर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

ये दृश्य हम देख पा रहे हैं यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है यहाँ पर देखिये ये स्टेशन है जिसपर की एक --

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इमारत बनी हुई है जिस पर कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लिखा हुआ है। इसके बाहर ये बगीचा बना हुआ है।